बांसे रखी हुई हैं जोकि अपने हाथों में ले कर के एक नाव को चलाने की कोशिश कर रही है।

ऊपर कुछ ऐसिया लगी हुई है। ऊपर एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है। ऊपर नीला आकाश दिखाई दे रहा है।

और यह कुछ काम को करते हुए भी देखे जा सकते है। ऊपर बहोत सारे पाइपे वगैरहलगी हुई हैं और नीचे उतरने के लिए भी कुछ ऐसा बनाया गया है।

कुछ सफ़ेद एंड ब्लू कलर से एंड कुछ को ग्रीन एंड येलो कलर से पेंट किया गया है।

सामने कुछ जालिया भी लगी हुई हैं। पीछे नीला आकाश साफ़ तौर पे देखा जा सकता है। नीचे ग्राउंड में कुछ बच्चे फुटबॉल खेलते हुए देखे जा रहे हैं।

यहाँ पर एक बड़ा सा मन्दिर देखा जा सकता है। दरअसल यह बहोत बड़ा तो नहीं है पर यह एक छोटा सा मंदिर है जिसके अंदर बहोत सारी लाइटें लगी हुई हैं।

यह नीचे कुछ पुलिस खड़ी हुई है और अगल - बगल में कुछ लोगों को भी देखा जा सकता है। यह देखने में बहोत ही अच्छा लग रहा है। ऊपर के दो गेटों को --

यहाँ पर एक बड़ा सा ग्राउंड देखा जा सकता है। अगल-बगल में बहोत सारे पेड़ देखे जा सकते हैं। सामने एक बड़ा सा टावर जैसा लगा हुआ है।

यह कोई मॉल के अंदर का तस्वीर है जहाँ पे बहौत सारे बिस्किट वगेरा रखे गए हैं सामने तो बहौत अलग-अलग प्रकार के बिस्किटें देखि जा सकती है।

एक बिजली जैसा दिखाई दे रहा है। लाइट की तारे लगी हुई हैं। बड़ी-बड़ी पोस्टरे लगी हुई हैं। नीचे बहोत सारे लोगो को काम करते हुए साफ़ तौर पे देखा जा सकता है।

ऊपर नीला आकाश है। अगल बगल में बहोत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं। यह देखने में बहोत ही सुंदर व आकर्षक लग रहे हैं।